इस फोटो में एक प्राचीन बड़ा मंदिर दिखाया गया है।

और साइड में भी एक नाव है पीछे की साइड --

धरती पर कुछ बोले भी रखी दिखाई दे रही हैं।

इसने अपने सर पर एक टोपी रख रखी है।

यह फोटो किसी शादी विवाह से लिया हुआ लगता है।

काफी सारे काउंटर्स भी लगे हैं जिन पर कुछ सामान रखे है इन--

सामने की साइड सिंक भी लगा है कुछ गेट और कुछ जंगले भी लगे है।

पीछे एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में पानी का पाइप है।

कुछ पेंट की बाल्टियां भी रखी हुए हैं साइड में।

ये कोई संगीतकार लगते हैं जो कुछ संगीत का सामान ले रहे हैं।

इस फोटो में सामने की ओर काफी सारी लाइटें और कुछ टेंट लगे हैं।